overview of moodle पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में learning management systems lms
एक lms के रूप में moodle
moodle का उपयोग कौन कर सकता है और moodle websites के उदाहरणों के बारे में सीखेंगे
हम moodle को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और
moodle श्रृंखला में प्रदर्शिक होने वाले मुख्य फीचर्स के बारे में भी सीखेंगे
इस tutorial के शिक्षार्थियों को यह ज्ञान होना चाहिए कि website को browse कैसे करें
सबसे पहले यह समझते हैं कि learning management system या lms क्या है
एक lms हमें किसी भी ईelearning कंटेंट को बनाने प्रबंधन करने और प्रदर्शित करने में मदद करता है
उदाहरणस्वरूपः शैक्षिक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम
यह हमें हमारे पाठ्यक्रमों का प्रबंधन करने में भी मदद करता है
हम कंटेंट बना और edit संपादित कर सकते हैं छात्रों को access we सकते हैं उनके प्रस्तुतिकरणों को grade we सकते हैं आदि
moodle एक प्रतिक्रियाशील free और open source सॉफ्टवेयर है
यह शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विश्वव्यापी रूप से उपयोगित अधिक प्रसिद्ध lms है
इसका सुरक्षा नियंत्रण हमारे data को सुरक्षित और संरक्षित रखता है
इसमें कुछ अधिक विशिष्ट विशेषताएं हैं जो शिक्षकों और शिक्षार्थियों दोनों को सशक्त बनाती हैं
moodle विस्तृत प्रलेखन प्रदान करता है जो इसका उपयोग करना आसान बनाता है
moodle उपयोगकर्ता community और forum मदद काफी सक्रिय है
moodle में उपलब्ध मुफ्त plugins इसे और भी अधिक सुविधा संपन्न बनाते हैं
moodle सभी उपकरणों पर navigate करना आसान है;
यह सहयोगी साथ ही साथ व्यक्तिगत अधिगम में मदद करता है
forums peer असेसमेंट group management learning paths आदि का उपयोग किया जा सकता है
अब देखते हैं कि moodle lms का उपयोग कौन कर सकता है:
शैक्षणिक संस्थान जैसे universities colleges schools और coaching संस्थान
कर्मचारी प्रशिक्षण और अभिविन्यास के लिए व्यवसायिक
अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम
कोई भी ईelearning आधारित संस्थान
अब moodle का उपयोग करके तैयार कुछ websites को देखते हैं
इनके जैसे colleges
इनके जैसे प्राइवेट universities
इसके जैसे प्रशिक्षण संस्थान
इसके जैसे coaching संस्थान
शिक्षक जो अपना पाठ्यक्रम online प्रदान करना चाहते हैं आदि
moodle में निम्नलिखित url पर उपयोग के विस्तृत आँकड़े हैं
यहाँ आप विभिन्न देशों से पंजीकृत moodle websites check सकते हैं
moodle को संस्थापित करने के लिए हमें चाहिए apache webserver
mysql mariadb या postgresql के जैसा database और php
moodle एक resource कंज्युमिंग सॉफ्टवेयर है
moodle के लिए अनुशंसित हार्डवेयर हैं:
moodle code के लिए disk space: 200 mb plus space कंटेंट को store करने के लिए फिर भी 5gb काफी है
processor: 1 gigahertz कम से कम लेकिन 2 gigahertz dual core या अधिक अनुशंसित है
memory: 512mb कम से कम लेकिन 1gb या अधिक अनुशंसित है
system पर अपेक्षित load के आधार पर ये आवश्यताएं बदल सकती हैं
उदाहरणस्वरूप: पाठ्यक्रमों की संख्या और एक साथ अपेक्षित logins
इस श्रृंखला को बनाते समय moodle 33 नवीनतम स्थिर version था
यह हमेशा अनुशंसित है कि उपलब्ध नवीनतम स्थिर संस्करण के साथ काम करें
moodle 33 के लिए निम्न आवश्यक है:
apache 2 x या उच्चतर version
php 544 या कोई भी उच्चतर version
इस श्रृंखला के लिए हमने निम्न ऑपरेटिंग सिस्टम और software का उपयोग किया: ubuntu linux os 1604
xampp 5630 से प्राप्त apache mariadb और php और moodle 33
यह moodle श्रृंखला दो भागों में विभाजित है
एक moodle site administrators और दूसरा शिक्षकों के लिए
moodle site administrators moodle को server पर संस्थापित करेंगे
संस्थान के दिशानिर्देशों के आधार पर course categories बनाएं और multiple courses के लिए courses और user accounts का प्रबंध करें
moodle site administrators के लिए इस श्रृंखला में शामिल कुछ प्रमुख विशेषताओं की झलक यहां दी गई है
getting ready for moodle installation tutorial बताता है कि localhost पर packages और database के setup कैसे check करें
installing moodle on local server tutorial बताता है कि moodle को download और संस्थापित कैसे करें
admins dashboard in moodle tutorial बताता है admin dashboard
blocks in admin s dashboard tutorial बताता है किblocks को कैसे जोड़े और डिलीट करें
front page कैसे set करें
अगले tutorial categories in moodle में हम categories & subcategories बनाना सीखेंगे
courses in moodle tutorial में हम सीखेंगे कि course कैसे बनाएं और इसे कैसे कंफिगर करें
users in moodle tutorial हमें यह समझाने में मदद करेगा कि user को कैसे जोड़े
users profile कैसे edit करें और अधिक मात्रा में users कैसे अपलोड करें
user roles in moodle tutorial हमें यह समझने में मदद करेगा कि उपयोगकर्ताओं को विभिन्न भूमिकाएँ कैसे सौंपी जाय
उदाहरणस्वरूप secondary admin role teacher role और student role
भविष्य में moodle site administrators के लिए इस श्रृंखला में कई और tutorials होंगे
अब हम शिक्षकों के लिए tutorials की ओर बढ़ेंगे
शिक्षक अपने पाठ्यक्रम के लिए कंटेंट अपलोड और संपादन करने के लिए जिम्मेदार होंगे
छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए assignments और quizzes बनाएं
छात्रों को उनके पाठ्यक्रम में भर्ती करें और उनसे बात करें
अब मैं शिक्षकों के लिए इस श्रृंखला में शामिल कुछ प्रमुख विशेषताओं की झलक दिखाती हूँ
teachers dashboard in moodle tutorial समझाता है
course administration in moodle tutorial समझाता है किपाठ्यक्रम course में course settings कैसे कंफिगर करें
और activities और resources कैसे प्रबंधित करें
formatting course material in moodle tutorial समझाता हैdefault moodle text editor में विभिन्न formatting options
और अतिरिक्त course material जोड़ना
uploading and editing resources in moodle tutorial समझाता है कि url resource और book resource कैसे upload करें और
इस श्रृंखला में अगला tutorial है forums and assignments in moodle
इस tutorial में निम्न के बारे में सीखेंगे: moodle में विभिन्न प्रकार के forums
चर्चा के लिए forum कैसे जोड़े और assignments कैसे बनाएं
question bank in moodle tutorial में हम सीखेंगे कि questions की categories कैसे बनाएं और question bank में कैसे जोड़ें
quiz in moodle tutorial हमें सीखाएगा : quiz बनाना और question bank से quiz में प्रश्न जोड़ना
enroll students and communicate in moodle named tutorial में हम सीखेंगे: course में csv file द्वारा अपलोड हुए छात्रों को भरती करना
courses में groups बनाना और छात्रों को messages और notes भेजना
बाद में इस श्रृंखला में शिक्षकों और छात्रों के लिए कई और tutorials होंगे
संक्षेप में
एक lms के रूप में moodle moodle का उपयोग कौन कर सकता है और moodle websites के उदाहरण
हमने moodle चलाने के लिए सॉफ़्टवेयर और हार्डवेयर आवश्यकताओं के बारे में भी सीखा और उन महत्वपूर्ण विशेषताओं का अवलोकन किया जिन्हें moodle श्रृंखला में प्रदर्शित किया जाएगा
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएँ आयोजित करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
क्या आपके पास इस spoken tutorial में प्रश्न हैं कृपया इस साइट पर जाएँ
minute और second चुनें जहां आपके पास प्रश्न है अपने प्रश्न को संक्षेप में बताएं हमारी टीम में से कोई उनका जवाब देगा
spoken tutorial forum इस tutorial के विशिष्ट प्रश्नों के लिए है
कृपया उन पर असंबंधित और सामान्य प्रश्न post न करें यह अव्यवस्था को कम करने में मदद करेगा
कम अव्यवस्था के साथ हम इन चर्चाओं को निर्देशात्मक सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस mission पर अधिक जानकारी दिखाई गई link पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुवादित है और मैं जया spoken tutorial team के साथ अब आपसे विदा लेती हूँ